ये भगवान का मंदिर है बहुत सुंदर यहाँ बहुत अच्छे से बोर्ड - वॉर्ड लगा हुआ है बैठने का भी साधन लगता है अच्छा है ये ये लगता है बुद्ध भगवान का फोटो है लगा हुआ।

दो बिल्डर आदमी हैं जोकि हमें लगता है सी जीत के आये हुए हैं। यहाँ पे एक आदमी को हाथ मिला रहे हैं एक आदमी से लगता है उनको ढेर साडी खुशियाँ मिल रही हैं जो तीनो मिलके वो बाँट रहे हैं अपने रूम में और यहाँ पे भी कुर्सी वुरसी लगा हुआ --